दीवार पे ए_सी लगी हुई नजर आ रही है।

एक बच्चा भी खड़ा है जो पिंक कलर का टी शर्ट पहना हुआ।

नीचे कारपेट बिछा हुआ है जो मैरून कलर की है वहां पे कुछ भगवान की तस्वीर रखी हुई हैं।

इस दृश्य में एक मंदिर नजर आ रहा है।

बांस खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

बाहर मैदान दिखाई दे रहा है जिसपे घास निकले हुए है।

इस दृश्य में एक ग्राउंड नजर आ रही है।

जिसके ऊपर बैनर लगा हुआ है।

इस दृश्य में मिट्टी की जमीन नजर आ रही है जहां पे बुलडोजर मशीन लगे हुए हैं।

इस पे व्हाइट कलर की केवाड़ लगी हुई है।

सामने मिट्टी की जमीन नजर आ रही है जिस पे छोटे छोटे इत्तर ईटा पत्थर गिरे हुए।